उसके ठीक नीचे देखा जाए तो तालाब बना हुआ है तालाब जो कि नदी के टाइप में है जो कि नदी काफी सुख चुकी है उसके नीचे दो तीन आदमी खड़ा हुआ है उसके ठीक पीछे के साइड में बड़े-बड़े झाड़ है झाड़ो के ठीक पीछे बड़ा-सा जंगल है जंगल के पास में कई सारे लोग लोगो के पास मे काई सारे--

जैसा की अपनो को दिख रहा है एक बड़ा सा समुद्र है समुद्र के अंदर कई सारा पानी भला हुआ है पानी के ठीक पीछे से दिवाल बनी हुई है।

जैसे के अपने को नज़र आ रहा है कि नीचे कई सारा समान पड़ा हुआ है जहाँ पर कई सारी घासें उग रही है और मिट्टी पड़ी हुई है और मिट्टी के ठीक ऊपर के साइड में दो रेलिंग लगी हुई है रेलिंग के ठीक ऊपर ब्रिज का काम चल रहा है।

वो व्हाइट कलर कि बस है बस ऊपर काँच लगे हुए है काँच के ठीक पास में एक वैन खड़ी हुई नज़र आ रही है उसके ठीक पीछे में एक आदमी है।

ये गुम्बज के ठीक पीछे के साइड में चददर पड़ा हुआ है चददरो के ठीक पीछे के साइड में बड़े-बड़े झाड़ लगे हुए हैं झाड़ो के ठीक नीचे के साइड में छोटी-छोटी घास उगी है घासो के ठीक पीछे के साइड में एक बड़ी सी दीवार बनी हुई है दीवार जो की व्हाइट कलर की नज़र आ रही है